vector data styling in qgis पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
single symbol स्टाइलिंग categorized स्टाइलिंग graduated स्टाइलिंग और
labeling फीचर्स का उपयोग करके वेक्टर डेटा को स्टाइल करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको qgis इंटरफेस से परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको प्लेयर के नीचे स्थित code files लिंक में दिए गए फोल्डर को डाउनलोड़ करने की आवश्यकता है
डाउनलोड़ की गई zip फाइल के कंटेंट्स को एक्स्ट्रैक्ट करें
एक्स्ट्रैक्ट किए गए फोल्डर में worldshp फाइल पर जाएं
मैंने पहले ही कोड़ फाइल को डाउनलोड़ एक्स्ट्रैक्ट किया है और फोल्डर को desktop में सेव किया है
codefile फोल्डर को खोलने के लिए इस पर डबलक्लिक करें
worldshp फाइल पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से open with qgis desktop ऑप्शन चुनें
qgis इंटरफेस खुलता है
qgis tips डायलॉग बॉक्स खुलता है
डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ok बटन पर क्लिक करें
विश्व का मानचित्र डिफॉल्ट स्टाइल में कैनवास पर लोड़ होता है
आप layers panel में world लेयर देख सकते हैं
world लेयर पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से open attribute table चुनें
इस लेयर के लिए attribute टेबल खुलता है
यहां आप रो और कॉलम फॉर्मेट में एम्बेडेड विभिन्न फीचर्स का सभी डेटा देख सकते हैं
देश के नाम admin कॉलम में दिए गए हैं
स्लाइडर को टेबल के निचले भाग पर ड्रैग करें और pop_est कॉलम पर जाएं
इस कॉलम में विभिन्न देशों की जनसंख्या सूचीबद्ध है
अब हम यहां दर्शाए गए जनसंख्या के डेटा को विश्व के मानचित्र पर विभिन्न स्टाइल्स में चित्रित करेंगे
attribute टेबल बंद करें
world लेयर पर राइटक्लिक करें
कॉन्टैक्स्ट मैन्यू से properties ऑप्शन चुनें
layer properties डायलॉग बॉक्स खुलता है
बाएं पैनल में style टैब पर क्लिक करें
style टैब में विभिन्न स्टाइलिंग ऑप्शन्स उपलब्ध हैं
डायलॉग बॉक्स में ऊपरी बाएं कोने पर स्थित ड्रापडाउन बटन पर क्लिक करें
आप यहां भिन्न स्टाइलिंग ऑप्शन्स देखेंगे
हम इस ट्यूटोरियल में पहले तीन समझेंगे
single symbol ऑप्शन चुनें
यह ऑप्शन आपको सिंगल स्टाइल चुनने की अनुमति देता है
चुनी गई स्टाइल लेयर में सभी फीचर्स पर लागू हो जाएगी
fill पैनल के नीचे उपलब्ध add symbol layer बटन पर क्लिक करें
symbol layer type के नीचे विभिन्न स्टाइल ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं
क्योंकि यह एक पॉलीगन डेटासेट है तो हमारे पास दो मूल पसंद हैं
आप पॉलीगन को अपने पसंदीदा रंग और स्टाइल से भर सकते हैं
outline का रंग स्टाइल और चौड़ाई को भी बदला जा सकता है
fill ड्रापडाउन के आगे ड्राप डाउन ऐरो पर क्लिक करें
रंगत्रिकोण खुलता है
आवश्यक क्रम को चुनने के लिए रंगत्रिकोण को घुमाएं मैं नीला रंग चुनूंगी
इसी तरह outline का रंग चुनें
मैं पीला चुनूंगी
fill style में dense1
outline style solid line
outline width 046 millimeters
समझने के लिए विभिन्न स्टाइल ऑप्शन्स उपलब्ध हैं
स्टाइलिंग पूर्ण करने के बाद layers properties डायलॉग बॉक्स के निचलेबाएं कोने में ok बटन पर क्लिक करें
कैनवास पर आप देखेंगे कि आपके द्वारा चुने गए स्टाइल पैटर्न के साथ नई स्टाइल लेयर पर लागू हो गई है
अब हम देखेंगे कि जनसंख्या के डेटा को मैप कैसे करें
जनसंख्या के डेटा को मैप करने के लिए single symbol स्टाइल बहुत उपयोगी नहीं है
अन्य स्टाइलिंग ऑप्शन को समझते हैं
फिर से world लेयर पर क्लिक करें और properties ऑप्शन चुनें
layers properties डायलॉग बॉक्स में इस समय हम style टैब से categorized चुनेंगे
categorized अर्थात लेयर्स के फीचर्स रंग के भिन्न शेड्स में दिखाई देंगे
ये रंग के शेड्स attribute fields में यूनिक मानों पर आधारित होते हैं
क्योंकि हम जनसंख्या के डेटा को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं column ड्रापडाउन में हम pop_est चुनेंगे
ड्रापडाउन से अपनी पसंदीदा रंग का रैंप चुनें मैं blues चुनूंगी
मध्य पैनल के निचले भाग में classify बटन पर क्लिक करें
मध्य पैनल समरूपी मानों के साथ विभिन्न वर्ग दर्शाता है
निचले दाएं कोने में ok बटन पर क्लिक करें
विश्व के मानचित्र पर आप नीले शेड्स में प्रदर्शित भिन्न देशों को देखेंगे
मानचित्र को जूमइन और जूमआउट करने के लिए बीच के माउस बटन को नीचे स्क्रोल करें
हल्के रंग के शेड्स कम जनसंख्या दर्शाते हैं
गहरे रंगे के शेड्स अधिक जनसंख्या दर्शाते हैं
एक बार फिर से layers properties डायलॉग बॉक्स खोलें
style टैब में ड्राप डाउन बटन पर क्लिक करें
graduated symbology को समझते हैं graduated ऑप्शन चुनें
graduated सिंबोलॉजी प्रकार आपको यूनिक वर्गों में कॉलम में डेटा को विभाजित करने की अनुमति देता है
हम प्रत्येक वर्गों के लिए भिन्न स्टाइल चुन सकते हैं
column ड्रापडाउन से pop_est चुनें
हम अपने जनसंख्या डेटा को 3 वर्गों निम्न मध्यम और उच्च में वर्गीकृत करने के बारे में सोच सकते हैं
तो classes ड्राप डाउन में 3 चुनें
आप देखेंगे कि वे 3 वर्ग समरूपी मानों के साथ पैनल में दिखाई देते हैं
classify बटन पर क्लिक करें
mode ड्रापडाउन पर क्लिक करें
यहां कई mode ऑप्शन्स उपलब्ध हैं
चीजों को सरल रखने के लिए quantile मोड़ का उपयोग करें
ये मोड डेटा को अलगअलग वर्गों में विभाजित करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं
यह भी ध्यान दें कि graduated स्टाइल में उपयोग किए जाने वाले एट्रिब्यूट के लिए यह संख्यात्मक फील्ड होना चाहिए
संख्यात्मक मान पूर्णांक या वास्तविक मान हो सकते हैं
string type के साथ attribute फील्ड इस स्टाइलिंग ऑप्शन के साथ उपयोग नहीं किए जा सकते हैं
ok button पर click करें
अब मैप पर आप देशों को नीले रंग के 3 अलगअलग शेड्स में देखेंगे
ये रंगों के शेड्स देश की जनसंख्या का डेटा दर्शाते हैं
layers panel पर आप इस लेयर के लिए 3 वर्ग देखेंगे
यहां कुछ और स्टाइलिंग ऑप्शन्स उपलब्ध हैं
आप इन प्रत्येक वर्गों के लिए भिन्न स्टाइल और रंग चुन सकते हैं
layer properties डायलॉग बॉक्स खोलें
classes टैब में symbol कॉलम के नीचे रंगीन बॉक्स पर डबलक्लिक करें
symbol selector डायलॉग बॉक्स खुलता है
color ड्रापडाउन ऑप्शन्स में ड्रापडाउन ऐरो पर क्लिक करें रंगत्रिकोण खुलता है
आवश्यक रंग को चुनने के लिए रंगत्रिकोण को घुमाएं
मैं निम्न जनसंख्या को दर्शाने के लिए लाल रंग चुनूंगी
symbol selector डायलॉग बॉक्स में ok बटन पर क्लिक करें
इसी तरह अन्य दो वर्गों का रंग बदलें
मैं मध्यम के लिए पीला और उच्च के लिए हरा चुनूंगी
legend कॉलम में पहली रो पर डबलक्लिक करें
दूसरी रो में medium टाइप करें और तीसरी रो में high टाइप करें
चयनित रैंज को एडिट करने के लिए values कॉलम में पहली रो पर डबलक्लिक करें
enter class boundsटेक्स्ट बॉक्स खुलता है यदि आप चाहते हैं तो आप निम्न मान और उच्च मान एडिट कर सकते हैं
अभी के लिए हम मानों को नहीं बदलेंगे ok बटन पर क्लिक करें
layer properties डायलॉग बॉक्स में ok बटन पर क्लिक करें
विश्व के मानचित्र को देखें
अब निम्न मध्यम और उच्च जनसंख्या को दर्शाने के लिए हमारे पास 3 भिन्न रंग हैं
layers panel को देखें
यहां जनसंख्या मानों की हमारी व्याख्या को दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित वर्ग नाम और रंग हैं
यह स्टाइल पिछले दो प्रयासों की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी मैप बताती है
अब सीखते हैं कि वेक्टर फाइल में भिन्न फीचर्स कैसे लेबल करें
प्रदर्शन के लिए देशों के नामों को लेबल करें
layer properties डायलॉग बॉक्स खोलें
बाएं पैनल से labels टैब चुनें
पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रापडाउन में show labels for this layer चुनें
एट्रिब्यूट टेबल के admin कॉलम में देश के नामों की सूची है
अतः label withड्राप डाउन में admin चुनें
स्टाइल मैन्यू में buffer चुनें
draw text buffer चेकबॉक्स को चेक करें
आवश्यकतानुसार टेक्स्ट के आकार को बदला जा सकता है
कलर ड्रापडाउन से रंग चुनें
ok button पर click करें
विश्व के मानचित्र पर हम देख सकते हैं कि देशों के नाम प्रदर्शित होते हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
single symbol स्टाइलिंग categorized स्टाइलिंग graduated स्टाइलिंग और
labeling फीचर्स का उपयोग करके वेक्टर डेटा को स्टाइलिस करना
नियत कार्य के रूप में
pop_est डेटा सेट को 5 वर्गों में वर्गीकृत करें
graduated स्टाइलिंग मेथड़ equal interval मोड़ का उपयोग करें
आपका पूर्ण नियतकार्य यहां दर्शाए गए अनुसार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर मौजूद विडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम पर पोस्ट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद